गाड़ी खड़ी हुई है साइड बो एक घर है। घर के अंदर बोर्ड लगा है बासों से अ फिटिंग बाहें नीचे का वो बे बिछी हुई हैं बल्ली है साइडों में --

एक बड़ा सा पुल है। पुल के दो एंगल दिख रहा है लोहे के साइड से ऊपर के तरफ दिख रहे हैं निचे गन्दा सा पानी है पिला-पिला सा --

खड़े हुए आगे खेत है। पीछे की तरफ।

ये फ्रूट्स की शॉप है जिस में बोहोत सारे ट्रे में सेब रखे हुए हैं साइड में केले का वो रखा हुआ है | एक डलिया रखी हुई --

जीने बने हुएँ हैं। साइडों में रेड कलर की बड़ी-बड़ी चेयर्स लगी हुईं हैं। साइडों में दूसरी साइड भी एक बीच में ड - डब्बा रखा है। ऊपर लाईटस लगीं हैं। छोटी - छोटी ऐ.सी. लगे हुएँ हैं।

आउटडोर लगा हुआ। लोहे का जाल बना हुआ है शेड । साइड में एक खड़ी है। बहोत लम्बी सी बिल्डिंग है। इसमें घड़ी बनी हुई। बानी हुई है। आगे की तरफ एक खम्भा है। उसमें तार --